मुझे एक रेस्टोरेंट दिखाई दे रहा है जिसने--

एक ब्रिज के बाद एक सड़क भी दिखाई दे रही है।

बने हुए हैं इसमें कंप्यूटर भी नज़र आ रहे हैं और एक घड़ी लगी हुई है जो कि दीवार से दीवार से टंगी हुई है।

खुला चौड़ा पारक दिखाई दे रहा है जिसमें--

जिसमें के जिसके पास से एक लड़का गुजरता हुआ दिखाई दे रहा है इसके हाथ में कुछ समान और--

मुझे एक रेस्टोरेंट दिखाई दे रहा है। जिसका नाम यो चाइना चाइल्ड आउट चाइनीस है।

इस तस्वीर में मुझे एक पैलेस दिखाई दे रहा--

जोकि एक बहुत ही बड़ी शॉप है जिसमें ढेर सारे मोबाइल्स और मोबाइल्स कवर --

और स्मार्ट वॉचेस नजर आ रही है।

यहां पर बहुत सारे गमले और खाली गमलों--

जिस से हम बैठ सकते हैं और इसके आसपास काफी सारे बा--

जिसमें काफी सारे कस्टमर खड़े हुए हैं जो की मछली खरीदने आए हैं।

रेस्टोरेंट की सजावट काफी अच्छी की हुई है इसमें एक क्लॉक भी लगी हुई है और--

और इस तस्वीर में मुझे ईसा मसीह और उनकी माता--

इस गार्डन में घूमते हुए नजर आ रहे हैं।

और काउंटर और चेयर नजर आ रही--